यहां पर एक दूर तक जाती हुई एक रोड दिखाई दे रही है जिसके साइडों में सफेद रंग की पट्टी दिखाई दे रही है।

उस साइड मे कुछ आगे की तरफ आदमी दिखाई दे रहे है।

काले रंग के शीशे दिखाई दे रहे हैं और साइड में एक मीटर है मोटर साइकिल का हैंडल दिखाई--

नीचे की तरफ एक चटाई बिछाई हुई है जिसके ऊपर कुछ आकृतियां बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

पीछे की तरफ बहुत सारी लाइटें और छत पर जलती हुई दिखाई दे रही--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

यहां पर हिंदी में सदर अस्पताल गोपालगंज दिखाई दे रहा है।

पीछे की तरफ बहुत सारी लोहे की चादर डाली हुई है।

पीछे की तरफ कुछ स्टूल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं जो लाल कलर के हैं जिसपे काले रंग के ऊपर चटाई बिछाई--

ऊपर की तरफ ताज का चिन्ह बना हुआ है जो आर्टिफिशियल है।

यहां पे एक बित बोत पानी का बोतल दिखाई दे रही है व एक जालीदार गेट खुले हुए दिखाई दे रहा है।

और कुछ झाड़ फूड़ बनी हुई दिखाई दे रही हैं व आगे की तरह कुछ लाल रंग की कुर्सियां रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

आगे की तरह कुछ पेप्सी की कंट्री रखी हुई दिखाई दे रही है।

तार छत के ऊपर लटका हुआ है जिसपे बहुत सारे कपड़े बिछाए हुए हैं।

यहां पे एक नदी दूर जाते हुए दिखाई दे रही है नदी की साइड में एक बोड्री हो रखी है।

साइडो में एक खंभा दिखाई दे रहा है जो लाल रंग है साइडो में कुछ घास फूस दिखाई दे रही है।

और यहां नीचे की तरफ बहुत सारे शैंपू रखें हुए हैं कुछ सामान ऊपर से लटके हुए दिखाई दे रहे हैं।

साइड में एक सोफे रखे हुए हैं उसके आगे मेज रखे हुए हैं और दीवाल पर एक पोस्टर चिपका हुआ है।

एक लाइट जलते हुए दिखाई दे रही हैं व स्विच है नीचे।

पीछे किधर छोट पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। यपे आगे मिट्टी का मैदान दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक रंग बिरंगा एक स्टोर दिखाई दे रहा है।

की तरफ दो भैंस व पीछे की तरफ एक और भैंस आती हुई दिखाई दे रही है।

केबिन के अंदर एक आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहा है बाकी की तरफ दो चेयर पड़ी हुई दिखाई दे रही है जिनका रंग ला--

यहां पर दूर तक जाती हुई एक रोड दिखाई दे रही है रोड के ऊपर लकड़ी का एक छत ढली हुई है।

यहां सामने रंग बिरंगी लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही है।

चीजें रखी हुई है दीवारों पर बहुत सारे पोस्टर बने हुए दिखाई दे रहे है।

यहां पर एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसका मुंह दिखाई नहीं दे रहा--

की तरफ ऑरेंज कलर का पेट दिखाई दे रहा है व साइड में चटाई दिखाई दे रही है जो नीले कलर की है।

कुछ आदमियों ने सर पर ऑरेंज कलर का साफा व पिंक कलर का नीचे कुछ डाले हुए हैं।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

और आगे की तरफ एक बाउंड्री दिखाई दे रही है जो पीले व लाल कलर की है।

यहाँ दुकान में रखी बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं ऊपर की ओर बॉक्स में बैट रखें हुए कोई प्लास्टिक की चीजें दिखाई दे रही हैं।

बीच में एक पेंटिंग बनी हुई है जो मछली की है।

मेज के उचर कुछ सफेद रंग का एक्यूमेंट रखे हुए दिखाई दे रहे--

एक लड़के ने कुछ नीले कलर की टीशर्ट और काले कलर का लोअर डाले हुए है।